तस्वीर मानो किसी रेस्टोरेंट की है।

या स्टेशनरी की प्रतीत होती दिखाई दे रही है।

तस्वीर किसी बहते हुए पानी की लग रही है।

यह तस्वीर में घर का लिविंग रूम या हॉल हैं।

तस्वीर बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक लग रही है।

तस्वीर मानो किसी खिलौने की दुकान की लग रही है।

यह तस्वीर बहोत सुंदर दिखाई दे रही है।

जंगल या फिर गांव की लग रही है।

यह तस्वीर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही हैं।

घर की बिल्डिंग की दिखाई दे रही है या फिर और कुछ--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

तस्वीर में किसी कैफे या रेस्टोरेंट का जिक्र करा हुआ है।

घर का सामान या फिर डिपार्टमेंटल स्टोअर --

पर एक लड़का नदी की सैर और नाव की सैर कर रहा है।

मन को सुकून पहुंचा रही है।

यहां पर साईकल बनाई जाती है पंचर बनाई जाती है यैसा प्रतीत होता--

यह तस्वीर बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है।

खेती बाड़ी का सामान मिलता होगा।

शायद यह किसी पर्यटक स्थल की तस्वीर होगी ऐसा प्रतीत होता है।